शादी का मंडप है जहां पर येल्लो कलर से डेकोरेशन हो रखी है रेड कलर की चेयर्स रखी है एंड येल्लो कलर्स की भी चेयर्स रखी है एक अंकल फोटो ले रहे है एक आंटी बैठी है।

यह एक शॉप है यहाँ पर एक मीटर लगा हुआ है तीन व्हील्स लगी हुई है दो लाइट लगी हुए है दो शटर लगी हुई है और दो वायर लगे हुए है और एक ग्रीन कलर का कपड़ा भी बांधा हुआ है।